कमरे के बाहर की तरफ बहुत सुंदर पौधे लगे हुए हैं।

घर के नीचे की तरफ बहुत सारे ईंटे पत्थर गिरे हुए है।

गेट के ऊपर नीले रंग का बैनर लगा हुआ है।

साइड की घर में ऊपर की तरफ एक झंडा लगा हुआ है।

दीवार के दूसरी तरफ से कुछ घर की छतें दिख रही हैं।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

इस तस्वीर में एक मांगलिक कार्यक्रम दृश्य दिखाई दे रहा है।

साइड की दीवारों पर बहुत सारी साड़ियां डब्बों में रखी हुई दिखाई दे रही हैं।

इस तस्वीर में एक छोटा सा पत्थर का बना हुआ खंबा दिखाई दे रहा है जिसपर बोहोत सारे चित्र और आकृति बनी हुई हैं।

इस फुटपाथ के साइडों में बहुत सारे पेड़ और पौधे लगे हुए हैं।

दुकान के पीछे की तरफ एक पेड़ दिखाई दे रहा है।

दुकान के अंदर बहुत सारे सामान रखे हुए दिख रहे हैं।

इसके आसपास बहुत सारे गमले पेड़ पौधे लगे हुए दिख रहे हैं।

बिल्डिंग के पीछे की तरफ नीले रंग का आसमान दिख रहा है।

इस तस्वीर में जमीन पर बहुत सारी सब्जियां रखी हुई है।